ट्राउजर टी शर्ट टॉप्स चिल्ड्रन के लिए सेल किए जाते हैं।

श्री साई शुद्ध भोजनालय एंड रेस्टोरेंट का बैनर दिखाया गया है द रेस्टोरेंट इस सो वेल --